आस पास लाइट भी लगे हुए है और माइक भी लगे हुए हैं बाहर जूते चप्पल लोगो ने उतारे हैं रोड के पास से एक बाइक जा रहे हैलोग जा रहे है ।

यहां पे चार पाँच मजदूर खड़े है लोग छत वो लोग छत बना रहे है छत पे आर_सी_सी का काम हो रहा है।